इसमें अंग्रेजी और हिंदी भाषा में कुछ लिखा गया है इसके अगल - बगल छोटे - छोटे दीवारे और कई खम्बे --

द्वार के बगल में दिवार पर वाटिका लिखा हुआ है और पौधा भी हैअंदर आधी दिवार नजर आ रही है।

इसके आगे एक खिड़की है पीछे दरवाजा भी है खिड़की में जालियां लगी हुई है इसके आगे लकड़ी का बेंच है बेंच पे कुछ किताबे है।

इस दृश्य में हम देख रहै हैं एक बडई सी खेत को दिखाई गया है इसमें एक जगह बड़ा-सा गड्ढा --

इसके आगे एक चौकोर दिवार बनाई गई है इसके बगल में बहुत सारे घास नजर आ रहै है इसके आगे कई--

इसके किनारे-किनारे छोटे-छोटे पोंधे नजर आ रहे है। कई नारियल के बड़े-बड़े वृक्ष है।

इस दॄश्य में एक लंबी सी नदी दिखाई दे रही है नदी के बिच में कही-कही रेत नज़र आ रहा है।

जगह-जगह सीढिया बनाई गई है इसमें कुछ दिखाई दे रहा है एक घुमावदार सीढ़ी बनाया गया है।

इस दॄश्य में एक बडा सा दो घुमट का मकान दिखाई दे रहा है इनमे बहोत सारे खिड़किया है।

सामने टीन की छावनी हैऔर कई बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे है दो गड़िया दिखाई दे रही है।